यह कोई पार्क है जिसमें एक बोर्ड लगा हुआ है और इतने पक्षी और जानवर हैं और यह सब बताया गया है पीछे काफी हरा भरा जंगल है।

यहां पर एक पार्क का दृश्य है जिसमें लोहे की जालीया लगी हुई हैं और जाली के उसे तरफ कुछ पेड़ दिख रहे हैं।